यह मछलियां अभी हमें जीवित नजर आ रही हैं।

सफेद कलर का दरवाजा नजर आ रहा है।

खाने के टेबल लगे हुए हैं।

यहां हमें एक बारबर की शॉप नजर आ रही है।

ढाबा और करियाने की दुकान है।

यहां पर काफी सारे लोग बैठ कर खाना खाते हुए दिख रहे हैं।

एस_आर_ए मतलब स्अ अ स्पा और--

औरतें उनकी पूजा कर रही है। दीप जला रखे हैं और औरतों ने साड़ियां पहन रखी हैं।

और यहां पर एक मैट बिछा हुआ है।